इस तस्वीर में एक बड़ा सा खेत दिख रहा है खेत में अम बहुत सारे --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

इस तस्वीर में एक बड़ी-सी मस्जिद दिखाई दे रही है मस्जिद के ऊपर के माइक वगैरा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक बड़ी सी मच्छी दिखाई दे रही है जो की उजले और काले कलर की है।

ये एक चर्च की तस्वीर है जहाँ की उजला और लाल कलर का चर्च दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में बड़ी सी सोफा दिखाई दे रही है सोफा लाल और उजले कलर की सोफा दिखाई दे रही हैं।